पेन के पाउचेस भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं पेन से लिखे पाउचेस भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं नोटबुक भी यहां पर है।

ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम दिखाई दे रहा है और यहा पर सिंटेक्स वगैरे लगाई हुई है।

ये मातारानी का दरबार है यहां पर श्रद्धा लोग प्रार्थना करने के लिए वह आए हुए आए हुए है यहां पर मातारानी के काफी सारी --

आ एक पोल दिखाई दे रहा है जिसमे लाईट सिक लगा हुआ है।

ऑटो स्टैंड यहाँ पर दिख रहा है काफी सारे ई रिक्शास यहां पर दिख रही है।